और यहां पर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं एक बाइक भी खड़ी हुई है और भीतर की साइड रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और ये कोई बुलेट है जो कि हरे कलर के नेवल पाइप आई हुई है जो कि दो से ढाई लाख की आ रही है।

दो बोतलें देखने में बहुत ही अच्छी भी लगती है बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है ये।

को यहाँ पर कुछ बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है कुछ जेंट्स भी बैठे हुए हैं बहुत अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है।

और सफेद कलर का पेंट किया हुआ है खिड़कियो पे कुछ पर्दे भी रखे हुए है जो देखने मे बहोत ही अच्छे लग रहे है बहोत ही--

यहाँ पर टैंक रखे हुए हैं जो कि इंडियन टैंक है।

बड़े बड़े फ्लाइट है जो कि विदेश देश विदेश जाती है।

और एक एल_सी_डी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ किचला रखा हुआ है और नीचे डब्बे भी रखे हैं बुझाने के लिए।

ये जो बराबर में कुछ कारें जा रही है क्योंकि ये लाइन में जा रही है व्हाइट कलर की कारें दिखाई दे रही है।

और सब लोग जीने से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर मेट्रो का भी हो सकता है।

एक योगा आसन लगाया हुआ है यहाँ प योग भी सिखाया जाता है और कुछ फाइटिंग भी सिखाई जाती है जिसमें कुछ पोस्टर पर लगा हुआ है उसके अंदर बहुत अच्छे खेल कूद--

और ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर सभी प्रकार का फास्ट फूड भी मिल जाता है।

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है और इनके चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

पीछे की साइड में कुछ पेड़ लग रहे हैं जो कि हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ बच्चे नीचे की साड़ी खेल रहे हैं कुछ खड़े हुए हैं।

और साइकिल पे एक दो बच्चा भी जा रहा है और यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा हुआ--

रेड कलर के हैं और व्हाइट कलर के भी भरे दिखाई दे रहे हैं जो देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं।

मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पर लाइटें लगी हुई है।

और यहाँ पर जिम की बहुत अच्छी अच्छी मशीनें रखी हुई है जिन पे काला कलर का पेंट किया हुआ है।

यहां पर कुछ लड़के जिम भी कर रहे हैं कुछ लड़कियां भी जिम कर रही है और बहोत अच्छी यहां पर साफ सफाई की हुई है और बहोत अच्छे यहां --

और नीचे आप देख सकते हैं कुछ गमलों में और कुछ पनीर में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं।

और बहुत अच्छी यहाँ पर साफ सफाई की हुई है लाइटें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

ये एक बहुत अच्छा मैदान है और इसमें चारों तरफ बाउंड्री की हुई है--

कोई यहां पर एक ब्लैक कलर का फ्रिज रखा हुआ है जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखी जाती है।

और ब्रेकफास्ट तीनों चीजें मिल जाती है नाश्ते में भी खाना पीना यहाँ पर बनाया जाता है।

पीछे की साइड से दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि लड़के हैं।

फोटो बहुत ही अच्छा कैप्चर किया हुआ है बहुत ही प्यारा भी कैप्चर किया यहाँ कुछ --

और यहाँ पर कुछ मशीनें दिखाई दे रही है पीछे की तरफ लाइटें दिखाई दे रही है पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझको एक बहुत अच्छी डेकोरेशन दिखाई दे रही है दो पंखे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पर्दे लगे हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है।